जयतु नज़र आ रही हैं जीप नज़र आ रहा आ रही है आसमान नजर आ रहा है ।

स्टील की रेलिंग रखी लगी हुई नज़र आ रही है जीसस का मूर्ति हमे नज़र आ रही है।

इस चित्र में हमें एक शादी का भ्रम होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें झरना भी लगा हुआ है और जो सजावट--

वठे है वो सफेद और गुलाबी रंग के फुग्गो की है।